और एक दिखाई दे रही है --

और लाल कलर का एक कपड़ा दिखाई दे रहा है ऊपर हरे कलर की घास दिखाई दे रही --

इसके बाहर मोटरसाइकिल खड़ी है जो काले कलर की है और एक साईकल भी दिखाई दे रही है ।

तथा यहाँ एक खेत दिखाई दे रहा है जिसमें हरे घास हैं और एक खजूर का पेड़ है जो हरे कलर का है।